यहां मुझे एक स्नीकर दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे दो बाइक दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में मुझे कुछ ट्रक दिखाई दे रहे हैं।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

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे कपड़े दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारी साइकल दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर में मुझे एक टंकी दिखाई दे रही है।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

यहाँ मुझे बिजली का खंबा दिखाइ दे रहा है।

यहां मुझे एक महिला दिखाई दे रही है।

कलेक्शन दिखाई दे रहा है यहां मुझे कुछ कपड़े दिखाई--

इस तस्वीर मे मुझे एक रोड दिखाई दे रही हैं।